देखिए ये बहुत बड़े फील्ड में बना है घर उर सब कुछ व्यवस्था है गाछ उछ सब कुछ लगा हुआ है।

हैं और जाली उली सब चीज है और बड़े ऐसन कुंए हैं और कि मस्त खूबसूरत ऐसन देखने में लगते हैं और कि मस्त काफी मस्त जगह है सीन बहुत मस्त है।

लाइट लगे है और यहाँ भी लगता है सुबह की मौसम जैसा और सुबह हो रहा है जो की मस्त लगते है देखने में घूम सकते है और फोटो उटो खींचा सकते है --

काफी मस्त लगते हैं देखने में खूबसूरत लगते हैं लाइट लगाए हैं और यहां पे सब चीज की व्ययवस्था है पेड़-पौधे की सब चीज की फल--